बोट पर अलग-अलग झंडे भी लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं टायर भी बंधे है।

पेड़ भी हमे नजर आ रहे है साथ में हमे एक और बिल्डिंग कनेक्टेड नजर आ रही है ।

एक और व्यक्ति पिंक शर्ट में दिखाई दे रहा है। एक बड़ी बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है।

गार्डन के बीच में ही हमें एक पानी का फवारा नजर आ रहा है।

इस फोटो में हमें एक कॉरिडोर दिखाई दे रहा है।

कुछ हमे जग दिखाई दे रहे है एक और कॉश कॉफ़ी मशीन हमे दिखाई दे रही है ।

कुछ बड़े पेड़ कुछ छोटे पौधे नजर आ रहे हैं लोहे की रेल्लिंग हमें दिखाई दे रही है।

नीचे हमें अलग चॉकलेट्स दिखाई दे रही है ऊपर पारले जी दिखाई दे रहा है।

चेयर के उपर रखें हमें कुछ तस्वीर और क्लॉक भी रखी दिखाई दे रही है।

सामने हमे बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की ग्रीन येलो ब्लू लाइट्स नजर आ रही है।

और उस पर बैठा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है पीछे हमे एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।